और यहाँ पर ऑक्सीजन के तीन सिलिंडर बड़े-बड़े रखे हुए हैं।

है एक नदी है एवं यहाँ पर --

यहाँ पर एक बड़ा गेट बना --

यहाँ पर टी.वी. पंखा डी.टी.एच. वैगरा --

एवं ऊपर तराजू रखा हुआ है।

यहाँ पर कुछ व्यक्ति बाइक से जा रहे हैं एवं बाइक खड़ी हुई है।